इस चित्र में तीन लड़कियां दिखाई दे रही हैं जो मुझे लग रहा है नाच रही हैं और इसमें से --

पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं जो लाइन पर खड़े हुए हैं और साथ में यहाँ पर चार-पांच व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं और ये पेट्रोल पंप बहुत बड़ा है।

यह एक दुकान है इसमें लिखा है अमूल और पिज्जा सेंटर भी है और यहाँ पर चार-पाँच बाइक दिखाई दे रहा है और साथ में इस गेट में गुब्बारा दिखाई दे रहा है जो नीला --

और इसमें नोट लिखा है दही घी पनीर रसगुल्ला गुलाम जाबुन जो बहुत अच्छा लगता है।

यहाँ पेड़ पौधे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं साथ में आधा मे टाइल्स लगा हुआ है और उसके पीछे नक्षत्र --

और यहाँ पर लिखा है प्रोफ़ेसर संजय चंद्र वं--

यह रोड है और इसमें गाड़ी चल रहा है साथ में दो-तीन बाइक दिख रहा है और एक टेंपू और शाम का समय है और यहाँ पर ऊपर में भी लाइट लगा हुआ है और साथ में --